मुझे यहां एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

मुझे यहां कुछ किताबें दिखाई दे रही हैं।

मुझे कुछ चेयर दिखाई दे रहे है।

मुझे यहां कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

मुझे यहां कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

बैठी दिखाई दे रही है।